बैकग्राउंड में बहोत एक ग्राउंड में एक पेट्रोल पम्प है पेट्रोल पम्प के जस्ट बाजू में एक बिजली का खंभा है जिसमे तार लगे हुए हैं।

मंदिर के ऊपर सीढ़ियों पे बहुत सारे लोग नीचे ऊपर आ आ रहे हैं नीचे से भी कुछ लोग जा रहे है ऊपर से भी कुछ लोग आ रहे है।

आजू-बाजू बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं सामने बहोत सारा कचरा डाला हुआ है एंड एक मिटटी का एक गड्ढा है।

यहाँ पर एक मस्जिद है जो की वाइट कलर की है उसके आजु-बाजु जंगला टाइप के बने हुए है सामने एक गेट लगा हुआ है ऊपर गुम्बद टाइप की है।